आ रहे हैं बहोत सारे डी_जे अलग अलग खानों में--

ऊपर तक दुकान भर रखी है।

और ऊपर लायटे भी दिखाई दे रही है।

लगती है लेडीज सूट टंगे हुए हैं।

और यहां हरियाली सी भी नजर आ रही है।

घर से भी नजर आ रहे--

और बहुत सारी दो तीन मोटरसाइकिल भी यहां--

बड़े बड़े गमले से भी नजर आ रहे हैं।